लोहे की एक सफ़ेद रंग का छोटा सा कुलर है। एक टेबल पे कुछ बोतले रखी हुई हैं। नीचे में पानी की छोटी सी काले रंग की टंकी है।

साथ ही में कुछ फूल लगे हुए हैं ग्राउंड में बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं। कुछ ताड़ के पेड़ है उनमें से।

साथी में पिल्लर है| कुछ होल टाइप का रूम है| पिल्लरो पे कुछ हिंदी में लिखा है।

ढेर सारे बड़े बड़े हरे रंग के बोर्ड लगे हैं इसपे हिंदी में पैथ्योलैब डिजिटल एक्सरे व अन्य ची --

सामने सिमेंट की रोड है जिस पे सफेद शर्ट व जिन्स पहने आदमी चल रहा है। बैठने के लिए सिमेंट के चबुतरे हैं।

एक बड़ा सा नीले रंग का पोस्टर है पोस्टर पे ओके टेक्नीकल बुक डिपोट लिखा हुआ है साथ ही में नीचे जगह का नाम लिखा है।